इसपे परफेक्ट लिखा हुआ है नीले कलर से लाल कलर से।

समोसे आलू मंडी की शॉप दिख रही है पीछे हमें और--

और एक छोटा सा रूम दिखाई दे रहा है यह शायद एक ग्राउंड की तरह दिख रहा है।